यह एक क्लासरूम है प्रोजेक्टर क्लासरूम है इसमें मैंम नॉनवर्बल कम्युनिकेशन पढ़ा रही हैं।

साइड में एक मेज रखा है और कुर्सी रखा है और जैसा कि किनारे एक टेबल लैंप रखा है और साइड में।

ये एक ऑफिस मीटिंग रूम है जैसा कि दीवार पे साइड में फ्रेम टंगा हुआ है काफी सुंदर रूम है बीच में टेबल लगा हुआ है।

और उसी के जस्ट पीछे देखने पे दो ट्रांसफार्मर दिख रहे हैं।

एक स्कूल है ब्लूबेरी स्कूल इंटरनेशनल के नाम से जो--

खेल रहे है और उसी के पीछे बहोत बड़ी बिल्डिंग है अ जैसा की हॉल के ही पीछे एक और बिल्डिंग में वाइट कलर की काफी बड़ी-बड़ी बिल्डिंगे --

एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है जहां पे अंदर देख पा रहे हैं की लगेज डिक्शनरी और बेस्ट सेलर का।

साइड साइड में किनारे किनारे खिलौने लगे हुए बच्चों के खेलने के लिए और जैसा कि काफी अच्छी जगह है।

सुबह का मोसम है काफी सुनहरा मौसम है काफी अच्छी जगह है जैसा की साइड साइड में काफी पेड़ है ये जंगल टाइप की जगह है साइड साइड में--

साइड साइड से पोशाला को घेरा गया है और पोशाला के जस्ट पीछे काफी बिल्डिंगें दिख रही है तार भी पोल भी दिख रहा है और एक मंदिर--

एक मंदिर छो बड़ा सा दिख रहा है और जैसा की बहुत सारे में काफी वैरायटी के पेड़ दिख रहे हैं।

और लाइटिंग भी की गई है और बहुत बड़ा बोर्ड लगा हुआ है पोस्ट ऑफिस का जैसा कि।

जैसा कि ये क्लीनिक वाली जगह है और काफी सारी शॉपें हैं यहां पे--